यहां पर एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

यहां नीचे एक नदी दिख रही है।

यहां पर एक टोल नाका दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

यहां पर पार्टी ग्राउंड दिख रहा है।

यहां पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक जंगल दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक हाथ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक सैलून दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ लोगों ने काला चश्मा लगाया हुआ है।

यहां पर एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक थैला रखा हुआ है।

यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ बच्चे स्लाइड कर रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।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

जिसमें एक हरे रंग का ट्री बना हुआ है यहां पर बहुत सारी टेबल चेयर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है।

जिसने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है यहां एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर कुछ पट्टियाँ बनी हुई हैं जिसमें पीले और काले रंग का पेंट हुआ है।

यहां पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारी टेबल और चेयर रखी हुई हैं।

यहां पर एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है इस घर के बाहर एक बड़ा गेट लगा हुआ है।

घर के बाहर कुछ गमले लगे हुए हैं।

इस घर के सामने एक खम्मा लगा हुआ है।

यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।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

इस घर का दरवाजा बंद है इस घर में एक खिड़की बनी हुई है।

यहां पर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक शॉप दिखाई दे रहे है शॉप में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर पीले रंग की एक बाउंड्री बनी हुईं हैं यहां पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।